और टेबल के ऊपर में हैंड वॉस है।

ये पॉट इस रूम का सौभाग्य बढ़ता है।

सुपरमार्केट का काम करने वाले आदमी काम कर रहे हैं और गोराख भी इंतजार कर रहे हैं।

इस खित्र में एक बोण उस बोण में--

जहाँ पे चाय सेल हो रहा हैं।

इस खेत्र में एक प्रार्थना ग्रह हे ।

और यहां पे बहोत सारा कार पार्किंग हुआ है और लोग यहां पे जॉब करते हैं।

और दिखने में बहोत सुंदर है।

दुकान है और ऑटो रिक्शा है और आदमी जाना आना कर रहे हैं।

और बहोत भीड़ है कच्चा रस्ता है।